ऊपर सूरज है और नीचे बहोत सारी पेड़ पौधे हैं।

जिन्होंने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रक्खे हैं।

एक घर है जिसके ऊपर करकट है।

बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए है नीचे बहुत सारे तारें टायर है।

पीछे नीला कलर का कुछ वस्तु है।

इसमें बहोत सारे आदमी है और एक पेर है।

और बहोत सारे आदमी हैं जो ए_टी_एम के पास खड़े हैं।

ऊपर आसमान है आसमान में बादल हैं।

और दो लाइट जल लही हैं।

एक आदमी है जिसने बैंगनी शर्ट पहन रखा है और चश्मा लगा रखा है।

जिसपे काला पोस्टर लगा है।

पोस्टर लगा हुआ है आसमान भी है।

वहां पे दो आदमी खड़े हैं और जा रहे हैं।

और पंडाल का रंग लाल है।

एक घूमने वाली चेयर है।

और उसमें सफेद बादल हैं।

उन्हें एक आंटी बेच रही है।

ऊपर ब्लैक पेंट किया है।

जो दुकान का दीवार है।

कुछ आदमी खेल रहे हैं।

सफेद कलर की दीवार है।

और बोहोत सारे पहाड़ हैं।

एक आदमी है जो गिटार बजा रहा है।

और उसमें लाइट लगा है।

और बाइक है बहुत सारे।

पेरों में पत्ते हैं और आसमान का रंग --

थोड़े मोरे पेर है आसमान में बहुत सारे बादल हैं।

एक सफेद कलर का दीवार है।

जिसमें से पानी आ रहा है --

बच्चा पेरों को पानी दे रहा है।

एक दीवार है जिसका रंग नीला है।